कुछ दीवार है जो की बहुत पुराने हैं जिसके कारण से दीवार में घास जम चुकी है।

नीचे दरवाजे है और कुछ दुकाने है जो की बंद हैं उपर खिड़किया हैं।

एक छोटा सा पार्क है जिसमें एक पूल बना है जो की लकड़ी का बना है अगल बगल लकड़िया लगी है।

और सामने स्विमिंग पूल दिख रहा है जिसमे पानी भरा हुआ है पानी के रंग नीले कलर का है।

सामने एक स्विमिंग पूल है जिसमे पानी भरा है पानी का रंग नीले कलर का दिख रहा है।

जो की रंग बिरंगी कलर का है चारों तरफ कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं जो की हरे भरे हैं और काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे हैं।

वो भी हरे भरे है उसमे एक हाथी है जो की काले कलर का है उसके चार पैर है और एक सूढ़ है और दो कान है और दो नाक है।

एक हाल है जिसके बाहर गेट लगा है जिसमें टेंट लगा है और चारों तरफ फूल लगी है और बाहर एक बोर्ड लगा है जिसमें एक लड़का एक लड़की के फोटो लगी है और एक साइड गणेश जी की मूर्ति है।

वे सभी कुर्सीया पंक्ती मे लगी है एक के पीछे एक लगी है कुर्सीयो का रंग हरे कलर का है।

पीछे एक लाइट लगा है जिससे अंदर प्रकाश आ रहा है अंदर चारो तरफ अंधेरा है।

ये एक पथ्थर से बना हुआ जगह है जहाँ पर बहुत सारी घास है।